बादल दिख रहा है घर दिख रहा है पत्थर पड़ हुय दिख रहा --

पेड़ पौधे दिख रहे है बस आती हुए दिख रही है शटर दिख रही है बहुत सारी शटर दिख रही है स्काय ब्लू --

जाली लगी हुई दिख रही है ब्लैक कलर के कांच दिख रही है ग्रीन हाउस दिख रहा है छोटे-छोटे टॉर्च दिख रही है रेड कलर के व्हाइट कलर के --

मंदिर दिख रहा है शटर दिख रही है शटर में ताला लगा हुआ दिख रहा है टाइल्स दिख रही है येलो कलर पुता हुआ दिख रहा है पंखा लगा हुआ दिख रहा है।

त्रिशूल दिख रहे है तीन नीचे त्रिशूल दिखाई दे रहे है एक पोटला दिख रहा है उपर नंदीजी बने हुवे दिख रहे है कलश दिख रहा है मूर्ति दिख--

कार दिख रही हैइस मे सिल्वर कलर की लाइट दिख रही है काच दिख रही है टायर दिख रही है ब्लॅक कलर पूता दिख रहा है पत्थर पड़े हुए दिख रहे है रोक पड़े हुई दिख रही है पती पड़े दिख रहे है कचरा पड़ा दिख रहा--